ए यहाँ पर दिखाई दे रहा हैं एक रूम में इस रूम में बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है जैसे लगता है बिजली का कोई कारबार हो रहा है वहाँ पे टेबुल भी रखा हुआ हैं कुर्सी भी हैं। वो ब्लू कलर का --

यहाँ पर बहोत बड़ा फील्ड है। उस फील्ड में देख रहे हैं। दो आदमी हैं एक सोया हुआ मोबाइल से बात कर रहा है। एक आदमी उसको पैर पकडे हुआ मास्क मुँह में लगाया हुआ हैं। ब्लू कलर का शर्ट पहने --